पैर अपना उठाया हुआ है और यह ग्रे कलर का है और इसकी चोंच बहुत बड़ी है और इसका पैर --

मैं भी सोचू और हमें स्वच्छ रहना चाहिए हमें घर घर सफाई करके रखनी चाहिए। हमें रोड सफाई करके रखनी चाहिए ताकि हम गंदगी ना फैले यहाँ पे एक छोटा सा सैलून है।

बहुत सारे बैग लिए हुए हैं हाफ पैंट पहने हुए हैं और यहां पर पूरी साफ है ओ चीज का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है छोटे-छोटे घास है वहां पे काफी लोग हैं संख्या में ज ज वो कोई कुछ लोग उतर रहे है कुछ लोग चढ़ रहे हैं और ये तो व्हाइट कलर की है।